जाके कभी यहाँ देखना पड़ेगा क्या है की क्या नहीं है कहाँ जाते है ये--

नदी-वदी का है यार पहाड़-वहाड़ का पानी-वानी गिर रहा है।

कोई नदी वदी से जाके जोड़ता है ये सब --

बहुत इतना अच्छा लग रहा है यार ये वाला टाइम देखने में भी ये न कोई --

कोई ना उइड मुबारक छे मुसलमान लोग कहैंगे --

शायद कोई ना पार्टी वार्टी दे रहा होगा अपना मुसलमान लोग वो तो चिकन मुर्गा ये सब बनना नार्मल से स्वाभाविक सी बात है।

बेहतरीन लगता है और अच्छा भी लगता है ये सब --

ये बच्चे लोग को ना क्राफ्ट बनाना सिखा रहे है कागज़ से ड्राइंग है क्या चीज है समझ नही आ रहा है पर--

ये तो कोई द पैलेस करके दिख रहा है यार हम बहुत बड़ा कैफ़े वेफे लग रहा है ।

जाके वहाँ देखना पड़ेगा क्या है? कि क्या नहीं है करके टेस्टी -वेस्टी सैंडविच पिज़्ज़ा - विज्ज़ा मिलते हैं।

एकदम फुग्गा उग्गा भी है और ना अच्छा भी दिख रहा है ये--

अच्छा लग रहा है और मै जाके देखता हूँ क्या होता है की क्या नहीं करके हव।

जाके न यार देखना पड़ेगा यहाँ क्या-क्या है अच्छा पेड़ पौधे भी दिख रहे है पानी वानी भी होगा यहाँ पे--

समंदर -अमंदर टाइप के है लागरी ए जगह कोई --

ये तो कोई तालाब वलाब का लग रहा है यार हो।

अच्छा दिख रहा है ये आगे फोटो वोटो खीचा रहा है फुल परछाई-वरछाई भी है और बेहतरिन लग रहा है जगह भी--

ये तो कोई चर्च है लग रहा है यार एक दो तीन चार पांच फ़थर लोग बैठा है पांच छे फाथर लोग है।

फर्स्ट फाउंडेशन कोचिंग सेंटर इंजिनीयर्स टीचर्स लिखा गया --

अच्छी बात हैं गरीबो के लिए यहाँ दान वान करते है और राईट साइड अं कुछ और शॉप भी है समझ नहीं आ रहा कहाँ का है ।

ये तो दुर्गा माता का पूजा वूजा हो रहा है हव --

ये बैहतरीन लग रहा है तभी जनता--

हरियाली वरयाली वहाँ बादल वादल भी कितना अच्छा दिख रहा है पेड़ भी सीधा खड़ी चट्टान है खड़ी पहाड़ है।

ये तो किसी के घर वर का है। ओर ये फर्नीचर का दूकान लग रही है जैसे पलंग हो गया सोफा हो गया।

अच्छा लग रहा है यहां पे जाके कभी जिम विम करना पड़ेगा यार बोलते है न नो पेन नो गेन पैन नहीं होगा तो गेन नहीं होगा ।

ये तो कोई पेट्रोल पंप की पास का बीच में अभी न पेट्रोल पंप ख़तम हो गया था।

जा वा के ना देखना पड़ेगा कैसा है की क्या है करके पर न अच्छे लग रहे है ये जगह पूरा--

अ उन लोग के लिए होगा साइनटिस्ट लोग का ऑफिस वोफिस होगा यार हा --

अच्छा दिख रहा है एक से एक कार्नर लट्टू वट्टु भी लगे है कहाँ गए समझ नहीं आ रहा पर --

बेहतरीन दिख रहा क्वालिटी बुक क्वालिटी भी अच्छी लग रही है।

जाऊंगा कभी देखने वेखने के लिए --

जाऊंगा एकाद दिन देख -वेख के आना है अब अच्छा खासा और अच्छा लग रहा हैं।

वो करते है मीटिंग वीटिंग करते होंगे कब क्या करना है ये वो ऐसे करके --

टेस्टी बनता होगा यहाँ खाने पीने के लिए।

ऐसा जाना पड़ेगा कभी देख- दुःख के आऊंगा अब यहाँ पे भी हाव।

दरगाह वर्गा टाइप का लग रहा है इसको देखने में भी घर वर --

पर अच्छा दिख रहा है घर एक तरफा दिख रहा है गार्डन वार्डेन भी है बहुत बढ़िया --